रोडवेज एक बहोत अच्छा वाहन होता है। रोडवेज सरकारी वाहन होता है। इसमें छे टायर्स होते हैं। इसका एक ड्राईवर और एक क्लीनर होता है।

यह बोहोत ही सुविधाजनक होती है।

यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करने मन्नतें मांगने जाते हैं और यह धर्म स्थल के नाम से भी जाना जाता है।

हिन्दुस्तानी शादियों में बैठाया जाता है।

यह तस्वीर एक बस की है। इसमें चार टायर पीछे एंड दो टायर आगे होते हैं।

और इसमें विभिन्न प्रकार की धासे भी होती हैं जहाँ पर हम --

यह अमरोहा का वासुदेव मंदिर है।

मसाले के साथ-साथ पानी भी डालना पड़ता है जब ये अपना पयोर वर्क करती है।